मार्केट और फल मार्केट है इहां पर।

पुल है जो तीन खंभों पर अड़ा हुआ है पूल--

ये लाइटों और बल्बो से सजाया गया है बगल में एक बेड शीट है।

अह सलवार और सूट में है व्यक्ति ने--

सजाया गया है उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

नीचे कुर्सियां है जो ब्लैक कलर की कंफर्टेबल सी प्रतीति हो रही हैं।

ये मेला लगा हुआ है लोग वहां पर आए हुए हैं इसने पगड़ी पानी हुई है लोग परंपरिक शास्त्र में है।